मुझे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल मे दोनों तरफ कुर्सियां डली हुई दिखाई दे रही है।

कुर्सियों के नीचे हरी कलर की मैट बिछी दिखाई दे रही है बीच में लाल कलर की मैट बिछी दिखाई दे रही --

मुझे एक स्टेज दिखाई दे रही है स्टेज पे मुझे नीले कलर के परदे लगे दिखाई दे रहे हैं ऊपर कुछ पोस्टर छपे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी गाड़ी के अंदर झांकता दिखाई दे रहा है एक आदमी मोटे पेट वाला सामने से आता दिखाई दे रहा है एक बोरी रखी दिखाई दे रही है दीवाल वाइट कलर की दिखाई दे रही है उसमें कुछ लिखा दिखाई दे रहा --